यहाँ पर पब्लिक डस्ट्बिनस भी रखे हैं और कुछ गमले भी रखे हैं।

बच्चों को ये झूले बहोत पसन्द आते हैं और हर दिन यहाँ पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है।

एस.आर.बी. पब्लिक स्कूल ये स्कूल है जहां पर बोहोत से विद्यार्थी पढ़ --

सीढ़ी भी है जो की ऊपर चढ़ने को और नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल होती है।

बहोत सारे फूल भी हैं जहाँ पर एक महिला खड़ी है वो इस पार्क में सैर का अनन्द लेने आई है।

इस कमरे मे गौतम बुद्धा की पूजा की जाती है और भी पूजा का साज समान यहाँ पर रखा गया है।

और गाने बजाने का इंतेजाम भी है। गाने बजाने वालों के पास बड़े-बड़े स्पीकर माइक और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैऔर कलरफूल लाइट भी लगी हैं।

इस तस्वीर में दो बच्चे लोहे की इस बने हुए स्टैंड पर खेल रहे हैं।

ये तस्वीर एक चच की है जहां पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। चच में बोहोत ही अच्छी और रंग-बिरंगी फूलों की सजावट हुई है।